यह बहोत ही बड़ी और ऊंची इमारत है। हवा महल या कोई ऐसी मशहूर जगह है यहाँ ये इसे देखने दूर-दूर से पर्यटक आते है। बहोत ही विशाल इमारत है। पत्थर से बनाई गई है और फिर इस पे नक्काशी भी की गई है।

यह एक मार्केट है जहाँ पे डॉक्टर के फिजिशियन की ओमप्रकाश की यहाँ पे एक दुकान है।

ये भी फूलो की बहुत बड़ी दुकान है। यहां पे रंग-बिरंगे फूल हैं बड़े-बड़े बुके भी हैं और लड़ीयां है फूलो की।

समान है पेंसिल रबर बुक्स डायरी पेन आप सारी चीज़े यहाँ से खरीद सकते हो इसमें कुछ भगवान की तस्वीर है।

यहाँं पन्नियां स्टोर पॉलीथीन स्टोर करके रखी हुई हैं। रंग बिरंगी स्टोर करी हुई है। बंडल में बंधी हुई है।

यह ग्रोसीरी की दुकान है यहां पे खाने पीने का सामान मिल रहा है बिस्कुट है दाले हैं जो भी घर मे खाने पीने की चीज़े हैं आप यहां से ले सकते हैं।

यहाँ पार्किंग में गाड़ियां खड़ी हुई है बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां है दो सफेद रंग की गाड़ी हैं एक काले रंग की गाड़ी है और पीछे बहुत सारे पेड़ है हरियाली है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं।

यहाँ पे काम चल रहा है। मजदूर यहाँ पे काम कर रहे है। ये कोई बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे ।